यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ योगा कर रही है जिन्होंने अपने काँधे पर तिरंगा का झण्डा लिया हुआ है।

शटर का कलर ब्राउन नजर आ रहा है एक डस्ट बीन भी नजर आ रहा है।

और पीछे कुछ गाड़ियां नजर आ रही है जो कि वाइट कलर में है।